और यहां पे बहोत सारे ऊं फोटो भी लगे हुए हैं जो कि यहां पे ऊं पूजनीय एं--

और यहाँ पे एक स्पलेंडर बाइक पर एक वाइट कलर का शॉर्ट पहना हुआ अंतेल ले रहा है आ --

और यहां पे एक अह पेड़ यहां पे भी एक बड़ा सा पेड़ है।

यहाँ पे लक्षा इंटरनेशनल अकेडमी स्कूल का नृत्य यहाँ पे बच्चे लोग नृत्य कर रहे हैं और यहाँ पे रेड कलर से --

दिखा गया न्हेह लक्ष्य हैं इंटरनेशनल एकेडमी और यहां पे एक बैनर बना हुआ हैं और यहां पे एक--

यहां पे व्हाइट मकान है और एक ऐल्लो मकान है और यहां पे एक बाइक खड़ी है जोकि उसके सीट का कलर ऐल --

लड़का और भी खड़ा है और यहां पे ब्लैक कलर का जैकेट पहना हुआ है यहां पे एक लड़की भी खड़ी है और वो ब्लैक कलर की शर्ट --

सोने का यहाँ पे एक थाली रखा गया है सोने का और यहाँ पे बहुत सारे एलुमिनियम का बर्तन रखा गया है और काफी सारे एं --

यहां पे बहोत सारे भगवान के मम् फोटो टैटू बनाया गया है और यह--